दोस्तों ये जो आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक कार खड़ी है बाहर और ये कुछ बड़ा हॉल बना हुआ है।

सतरह तारीख दूसरा महीना दो हजार चौदह का बना हुआ ब्रिज हैं जो की आज भी अच्छा लग रहा है।

मोटरसाइकिल स्कूटी वगैरा सभी दो पहिया वाहन की सर्विस करी जाती है बोहोत अच्छे से।

दोस्तों ये जो आप फोटो में देख पा रहे हो ये एक एटीएम है। यहाँ पर एटीएम के आस-पास साफ सफाई का माहोल थोडा कम है।

और स् बिजली का मीटर भी देखो ऐसे लगा हुआ है। तार फैला हुआ है। साफ़ सफाई पे यहाँ पे कम ध्यान दिया जा रहा है।

और ये ल् किसी जंगल में खड़ी है। ऐसा लगता है जंगल तो नहीं है पर पेड़ पौधे बहोत है।

दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हो ये एक मैरेज होम का फोटो है। यहाँ पर लड़की की शादी का फोटो है ये। यहाँ पर दावत लड़की लड़केवालों की तरफ से आये हुए मेहमानो को यहाँ पे भोजन मिलेगा।

इस फोटो में क्या साफ घने बादल नजर आ रहे हैं और कितना अच्छा पानी नजर आ रहा है।

काफी अच्छा इसका डेकोरेशन किया गया है इसके बाहर एक गाडी खड़ी है जो कि इसकी शोभा को थोड़ा फीका कर रही है ये गाड़ी थोड़ी यहाँ ये हटाइ --

दोस्तों यहाँ पर कारों की धुलाई होती है कारो की साफ़ सफाई करी जाती है इस गड्ढे के ऊपर कार को खड़ा किया जाता है और इसके नीचे एक आदमी घुसकर इसमें पाइप अ --

दोस्तों ये जो फोटो आप देख पा रहे हो ये एक रेस्टोरेंट का फोटो है। यहाँ पे स्टेज पर दूल्हा दुल्हन आएंगे माला डालेंगे एक दूसरे को।

साइड में हाँ तो नहीं वहां पे पब्लिक इंतज़ार करती है जहाज कब आयगा और ये यहाँ पे स्टेशन है ये। बोहोत अच्छा बना --

दोस्त ये जो फोटो आप देख रहे हो यह एक मैरेज होम की फोटो है |यहाँ पर मैरेज होम को काफी अच्छे से डेकोरेट किया गया है | डेकोरेशन काफी अच्छी है मैरिज होम की।

और ये हवाई जहाज उड़ने के लिए अब बिल्कुल रेडी है और यह उड़ने ही वाला है ।

दोस्तों ये जो फोटो आप देख रहे हो ये मैरिज होम का फोटो है। इसमें दूल्हा दुल्हन को ये जो आप कमल की तरह देख रहे हो इसमें दूल्हा दुल्हन को खड़ा किया जाता है।

दोस्तों ये एक कैफ़े है। इसमें बो कुछ लोग बैठे हुए हैं। वैसे ज्यादातर ये कैफ़े खाली पड़ा है अभी।